और पीछे एक शख्स खड़ा हुआ हैं।

सड़क पे जो है काफी सारा कच कचरा गिरा पड़ा हुआ है पीछे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे--

और साथ में एक नीले रंग का क्रेट दिखाई दे रहा है।

राइट साइड अह पर वॉल के साथ एक फोटो लगी हुई है।

और काफी सफाई नजर आ रही है टेबल के पास ब्राउन कलर की कुर्सियां लगी हुई--

और हैप्पी बर्थडे का लोगो लगा हुआ हैं।

ये एक मॉल की तरह दिखाई दे रहा है।

और जो ट्रैक्टर है वो रेड एंड येलो कलर का है।

काफी सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं।

और इसे जो है ब्राउन एंड व्हाइट कलर का पेट हुआ है।

जो कि आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स दा यूस करके कीती गई आ।

इस पिक्चर में सामने एक आदमी खड़ा है जोकि व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहा है और वह बच्चों को पढ़ा भी रहा है।

ये एक जिम दिखाई दे रही है जिसमे काफी सारी मिशीन पड़ी हुई है।

इस फोटो में काफी सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

उसने लाल रंग की श अह जो है जैकेट पेहनी हुई है।

और उसके लेफ्ट साइड पे दो रेड कलर के क्रेट पड़े हुए हैं।

और लाइट्स जो है काफी जल रही हैं जिससे पता चलता है कि अ रात की सिचुएशन है।

जिनका साइन बना हुआ है।

काफी सारे जो रॉक्स भी पड़े हुए--

और उनके आगे एक टेबल पड़ा हुआ है।